यहाँ पे हम देख सकते मोगरी का फूल गुलाब का फूल गेंदी ऍम और यहाँ पे मालाएं है ना बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है वो कमी हुई है।

यहां पर एक युवक एक आदमी का दाढ़ी बनाता हुआ दिखाई पर रहा है इसके पास कई सारे--

और उन्होंने पीली-गुलबी रंग का शर्ट पहना हुआ है।

हंसराज के पेन भी दिखाई पड़ रहा है और यहां पर मेंटोस बूमर पेटीएम का स्कैनर भी दिखाई पड़ रहा है|

और इस फोटो मे हम देख प रहे है ये सामने देख लीजिए ए-ए-एस _एल_वी बुक्स वर्ल्ड --

काले काले और मतलब दाल भी लगे हुए हैं इसको हम जो बोलेंगे जूही जो है कई सारे जानवर भी दिखाई